जंगल के उधर व्हाइट व्हाइट कुछ दिख रहा है कुछ उधर आदमी है कुछ इधर है।

यहां पोस्टर लगा हुआ है ब्लैक कलर का।

इस चित्र में माल का चित्र--

मंदिर में बहोत सारे आदमी है।

इस चित्र में एक रूम है रूम के बाहर बहुत सारे आदमी खड़े हैं व्हाइट कलर का शर्ट पहन के।

बकड़ी व्हाइट ब्राउन है कलर का जमीन में घास है बहुत सारे ग्रीन ग्रीन ।

एक अलमारी है शीशा वाला दुकान के बाहर एक आदमी है काम कर रहा है।

इस चित्र में कुछ लड़की लोग का चित्र है।

गोल जैसा राउंडिंग पार्क है।

घर के बाहर पेड़ पौधे हैं।